लिबर ऑफिस impress पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है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
यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
sampleimpress odp प्रस्तुति खोलें
अपनी प्रस्तुति के लिए custom background बनाएँ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
master slide प्रदर्शित होती है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
master slide template जैसी है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
पहले slides pane से slide 1 चुनें
इस प्रस्तुति पर सफेद background लागू करें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
page setup dialog box प्रदर्शित होता है
background टैब पर click करें
fill dropdown menu से bitmap option चुनें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
slide में अब सफेद background है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
पहले text चुनें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
character dialog box प्रदर्शित होता है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
font color dropdown से black चुनें
ok पर click करें
अब text काले रंग में है
अब रंग को slide पर लागू करें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
अब mouse button छोड़ें
आपने आयत बना लिया है
आयत में आठ handles पर ध्यान दें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
आयत का रंग बदल गया है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
text पुनः दिखाई the रहा है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
impress में मौजूद लेआउट्स प्रदर्शित होते हैं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
slide में लेआउट लागू करें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
अब इन boxes में content प्रविष्ट करें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
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
एक नयी master slide बनाएँ
नया background बनाएँ
contentदरcontent टाइटल के लिए लेआउट बदलें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
इन text boxes को format करें
इन boxes में text प्रविष्ट करें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
हमसे जुडने के लिए धन्यवाद !